साइड मे नाट बना हुआ है रात का समय है मे लाइटें लगी है किनारे पर पेड़-पौधे बने हुए हैं।

बगल मे सेलेब्रिटीस की पिक्चर बने हुए हैं छत पर फैन लगा हुआ हैं लाइटे लगी हुई है बहुत सारी बटरफ्लाई बनी हुई हैं।

बहोत सारे वाहन इधर-उधर जा रहे हैं तथा शॉप्स के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है।

यह एक पंचायत भवन ग्राम पंचायत फ़ासिद विकासखण्ड सारगड़ जिला राइगड़ छत्तीसहगढ़ का बॉर्डर --

तहसील कार्यालय बरमकेला जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित तहसील है इसके बगल में दो कार खड़ी हुई है।